यहाँ एक रूम दिखाई दे रहा है.

पेट्रोल पंप का रंग सफेद है।

एक युवक सब्जी बेच रहा है दो युवतियां सब्जियां खरीद रही है.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

यहाँ पर दीवारों का रंग सफेद है.

यहाँ पर एक जंगल दिखाई दे रहा है.

जिसका रंग ऑरेंज और सफेद है.

एक युवक दिखाई दे रहा है.

और एक वायर दिखाई दे रही है.

जहाँ पर बहुत सारे खिड़की दरवाजे हैं.

दुकान में ऊपर कुछ लिखा भी है.

और दूर एक खेत दिखाई दे रहा है.

घर के सामने एक गेट दिखाई दे रहा है.

दुकान के सामने फूल भी दिखाई दे रहे हैं.

एक युवक फोन में बात कर रहा है.

बिल्डिंग के सामने एक पाइप दिखाई दे रहा है.

ऊपर लाइट भी दिखाई दे रही है.

एक युवक साइकल चला रहा है.--

यहाँ एक रूम दिखाई दे रहा है.